यह एक पार्क है यह पार्क बहुत ही अच्छा है और काफी बड़ा भी है।

और दो लोग भी खड़े है अ वापस में कुछ अपने बात कर रहे हैं और यह बिल्डिंग --

यह ये मंदिर है यह मंदिर बहुत ही बड़ा और काफी सारा सुन्दर भी है यह मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते है और --

इसलिए सस्ते होनेल होने के कारण ही यहाँ पे बहुत दूर से लोग लेने के लिए --

यह एक पुल है यह पुल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है इसके बगल में एक नदी भी है यह नदी में बहुत अच्छा पानी भी दिख रही है इसके अंदर में बहुत ही अच्छे-अच्छे मछलियाँ और कीड़े-मोकोड़े यहाँ का पुल भी बोहोत ख़र्चा हुआ होगा बनाने में इसे।